फोटो में देख सकते हैं यहां पर--

देख सकते हैं यहां पर--

बहुत सारे लोग हैं और यहां पर पेड़ भी--

सकते है यहां पर--

एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और--

तो जैसा कि आप देख सकते हैं।

एक बहुत बड़ा गार्डन है।

सकते है यहां पर एक बहोत बड़ी--

सकते हैं यहां पर--

हैं और यहां पर बहोत सारे लोग खड़े--

तो जैसा कि आप--